इस फोटो में नदी दिखाई दे रहा है।

पीछे में कार का पोस्टर भी लगा के है।

पिलर का पास बहोत सारा प्राइज भी रखा हुआ है।

कार के ब्लू कलर का दो चेयर है।

आसमान में सफेद कलर का बादल दिखाई दे रहे--

बाहर में दो आदमी आग जला के बैठ रहा है।

कार्टून लाइन से रक्खे है।

सड़क का किनारे किनारे में फूल लगा के है।

छवि में बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

इसका किनारे बहुत सारा पेड़ पौधा है।

साइड साइड को रेड कलर से पेंट करके रखा हुआ है।

एक आदमी फोन पकड़ के दिखाई दे रहा है।

आदमी के हैं।

लहसुन का ऊपर बहुत सारा गाजर रखा हुआ है।

ये फोतो में बहुत सारा मिठाई दिखाई दे रहे है।

नीचे में एक प्लास्टिक बैग रखा हुआ है।

नोटिस बोर्ड लगा के भी है।

ये रूम को व्हाइट और ग्रीन कलर से पेन किया गया हुआ है।

टेबल का ऊपर में दो लैपटॉप रखे हैं।

ऊपर जाने साइड में एक सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में बहुत सुंदर पेंडल दिखाई दे रहा है।

इसमें एक बंबू लगा गया है।

हमें कपड़े से बना हुआ पेंडल दिखाई दे रहा है।

ब्लैक कलर का बड़ा बड़ा पिलर दिखाई दे रहा है।

पीछे में ग्रीन कलर का कारपेट बिछाया हुआ है।

ये फोटो में एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है।

यहां में एक ए_टी_यम मशीन भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में बहुत सारा सामान रख के दिखाई दे रहा है।